व्यक्ति भी आये हुए है जिनमें से कुछ लेडीजस है कुछ जेंट्स भी है और बहुत से बच्चे भी दिखाई दे रहे है बच्चे एक चेयर गेम खेल रहे है कुछ बच्चे चेयर पे बैठे है तो कुछ बच्चे चेयर के आगे खड़े हुए है और इस गार्डन में सर्किट दिखाई--

और बोहोत सारे इलेक्ट्रिकल्स बाए बाएर भी गए हुए हैं और और उसपर लिखा हुआ है हवाई अड्डा और वहां एक रोड --

और ब्लैक कलर में कुर्सिया रखी हुई है और सामने ही इनकाउंटर बना हुआ है और उसके सामने फोटुवो भी लगी हुई है।

नदी के इस साइड छोटी सी जगह दिखाई दे जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे छोड़े बड़े थोड़े छोटे पत्थर डले हुये है और नदी के उस साइड में जगह दिखाई दे रही है और छोटे -छोटे से पेड़ भी दिखाई दे रही है।

पिक्चर मे भी एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है और नदी मे कुछ कुछ जगह पर पेड़-पौधे भी लगे हैपेड़-पौधे के ऊपर भी हरे-हरे पत्ते भी लगे हुए है । और--

मैदान के घर बहुत सारे घर भी बने हुए है और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है और उन पर बहुत सारी लिप्स दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में।